यहां पर एक एम.आई स्टोर दिखाई दे रहा है।

इस पलग पे एक अ जेंट्स लेटा हुआ है।

जोकि कैमरा के अकॉर्डिंग अ वर्क करती है।

यहां पर एक इलेक्ट्रिकल बांध दिखाई दे रहा है।

जहां पर काफी सारी बुक्स रखी हुई है।

इस द्वार में एक ब्लैक लोहे का गेट लगा हुआ है।

टावर दिखाई दे रहा है। टावर के पास में एक बहोत बड़ी पानी की टंकी भी नजर आ रही है।

लोगो की भीड़ इकठा दिखाई दे रही है। यहां पर काफी ज्यादा पेड़-पौधे नजर आ रहे हैं सफेद-सफेद आसमान --

यहां पर काफी सारी कपड़ों की शॉप दिखाई दे रही हैं जहां पर काफी सारे ऊनी स्वेटर भी दिखाई दे रहे।

मिलता है जोकी अगल-अगल कलर में दिखाई दे रहा है यहां पर काफी सारे केक भी नजर आ रहे हैं जोकी --